सुंदर सा एक गली है इस गली में लीची बल्ब से अनेक प्रकार की सजावट की गई है।

एक सुंदर सा तालाब दिख रहा है तालाब के ऊपर मे एक बड़ा सा मगरमच्छ लेटा हुआ है।

एक बहोत सुंदर सा कपड़े का दुकान है कपड़े का दुकान के बाहर एक बड़ा सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सुंदर सा वॉटर फॉल है।

आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है।

एक सुंदर सा रूम दिख रहा है उसमें एक टेबल लगा लगा हुआ है उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है एक ऑफिस कुर्सी रखा हुआ है।

एक बहुत सुंदर सा दुकान है साफ सुथरा सा दुकान है उसमे सारा सामान शीशे के अंदर पैक किया हुआ है।

दुकान भी है दुकान के सामने एक आम का पेड़ भी सुंदर सा है।

जॉगिंग करने के लिए तीन चार व्यक्ति आए हुए हैं।

एक बहोत सुंदर सा पेट्रोल पंप है।

पेट्रोल पंप में सफेद कलर का दस पंद्रह की मात्रा में लाइट लगाए हुए हैं उसी के आगे एक फोरव्हीलर खड़ा हुआ है।

बिल्डिंग में बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग किया गया है।

दरवाजा का बहुत सुन्दर सा ग्रिल लगाया हुआ है।

एक बहुत छोटी सी मार्केट है मार्केट में ठेला वाला ठेला वाला फल ले के आए हुए हैं।

फल लेने के लिए दो-तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और अगल बगल में कचरे डालने के लिए कार्टून भी रखे हुए हैं।

एक सुखा सा वृक्ष भी खड़ा हुआ है अगल बगल में पानी बह रहे हैं।

व्यक्ति का हाथ पकड़े एक बच्चे खड़े हुए हैं।